अगले दो पहिए छोटे और पिछले दो पहिए बड़े हैं।

यह केवल ट्रैक्टर ही नहीं बल्कि किसान का परम मित्र भी है।

यह टोल टैक्स एक बड़े हाईवे पर है।

इन कुर्सियों पर लोग बैठकर बाइबल पढ़ते हैं।

इस खेत में कई तरह के फूल भी हैं।

यह टोल टैक्स सरकार द्वारा एक मेन हाईवे पर लगाया गया है।

यह तालाब किसी बंजर जमीन के आसपास बनाया गया है।

यह तस्वीर हॉस्पिटल के एक वॉर्ड कि हैं।

यह दृश्य दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

इस कंप्यूटर सेंटर में बहुत से कंप्यूटर लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में नदी का पानी भी बहुत साफ और अच्छा लग रहा है।

यह कारे दिखने में बहुत ही शानदार नजर आ रही हैं।

किसी क्लिनिक या ऑफिस का वेटिंग एरिया नजर आ रहा हैं।

यह तस्वीर एक सफेद रंग के कार की है।

इस कार के बहुत शानदार एलॉय व्हील्स पे डाले हुए हैं।

इस बैंक की फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया है।

इस ट्रक में कई पहिए लगे हुए हैं।

इसमें प्रवेश करने के लिए बहोत सुंदर डेकोरेशन और एक बहोत सुंदर गेट लगाया हुआ है।

यह तस्वीर एक ए_टी_एम की है।